कुछ खंभे दिख रहै लाइट के खंभे दिख रहै हैं और कुछ हमारी लाने डोरी भी दिख रही है और कुछ हरियाली भी दिख रही है कुछ लकड़ी भी दिख रही है कुछ पेड़े भी दिख रहै हैं कुछ टपरी ये क्या है?

यह मिट्टी भी दिख रहे है पेड़े भी दिख रहे हैं बादल भी दिख रहा है पीछे हरा-भरा मैदान भी दिख रहा है।

कार भी दिख रही है एक क्या है बिल्डिंग है मंदिर क्या है वो भी दिख रहा है और गुलाबी पता वों भी दिख रहा है पीला पता वों भी दिख रहा है ऊपर कुछ--